एक छत जिसमें कुछ कपड़े सुखा रहे हैं। छत के आसपास कुछ पेड़-पौधे हैं। छत के सामने एक--

एक मकान है। छत के नीचे कुछ इंटे‌ पड़े हुए हैं और नीचे में कुछ रॉड लगी हैं।

एक बड़ा होडिंग बोर्ड जिसका नाम श्री नाथ साईं सुमन भोजनालय लिखा हुआ है बोर्ड के पास बहोत सारे दूकाने है इसके पास एक बड़ा-सा पेड़ है।

एक संकरा रास्ता जो संग्रहालय का है संग्राहलय में कुछ लोग खड़े हुए हैं संग्रहालय में कैमरा एवं पंखा लगे हुए हैं।

ये एक बड़ा-सा मस्जिद मस्जिद के दोनों ओर दो खम्बे बने हुए हैं मस्जिद के बीचों-बीच एक गोल गुम्बदनुमा बना हुआ है गुम्बद के नीचे एक स्तंभ बना हुआ है।